जो सलाम जो झोपड़ियाँ बोले --

आज है जो एक अ युवक अपनी पैदल यात्रा कर रहे हैं पैदल चल रहे हैं।

इसकी बनावट देखिए क्या ही सुन्दर तरीके से बनावट किया चारों तरफ से चार गुंबद जैसा।

ड्रेस में एक लड़की है जो कि आपनी सेल्फी ली हुई हैपिचर ली हुई है जो कि सैलून है।

गाड़ी भी खड़ी हुई है इससे वो ज्यादा --

सभी हैं कुछ बच्चे भी हैं कुछ पुरुष भी हैं और इसी का जो चिन्ह है चिन्ह से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह --